दिखी है और यहां पे दो छोटे छोटे महावर के लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा रंग हैं।

हुई है यहां पे बादल दिखाई दे रही है।

कुर्सियां रखी हुई है बैठने के लिए और यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

ऊपर भी पेन पेंसिल किताब सब कुछ रख कर पढाई कर रहे हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारे छोटे छोटे अह गमले लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट --

यहां पर बैठकर कमेंट किया गया है।

उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

यहां पे लाइट लगी हुई यहां पे बहुत सारे कैमर लगे हुए है।

यहां पे पियानो गिटार रखा हुआ है।

लाल ग्रीन और येलो है यहां पर एक लोहे की पाइप --

यहां पे एक नीले करर कलर का बुक रखा हुआ हैं जिसका अकाउंट रजिस्टर लिखा हुआ इस पर टाईमिंग लिखा हुआ यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।

बाइक ठीक करी जा रही है यहां पे स्कूटी भी खड़ी हुई है।